यहां पर हमें एक चटनी और लाल सा भी दिख रहा है कुछ इस चाप पर हमें क्रीम भी डाली हुई दिख रही है|